यह एक बाइक का शोरूम दिख रहा है जिसमे बाइक रखी हैं तीन नई दिख रही है जो और सामने रखी हुई है।

यहाँ पानी है। पानी में बदख है ये ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है।

पानी में थोड़ी लहरें दिख रही हैं और बदक की मुँह दिख रहा है चोंच दिख रही है उसकी।

एक अ जंगल दिख रहा है और दूर नदी दिख रही है और मैदान में कुछ पधे पौधे लगे हुए हैं |

यह एक सोफा सेट रखा हुआ है जिसमें एक सोफा है ब्लू कलर की उसपे उम्म गादी बिछी हुई है।

बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं। अ जिसके पिलर दिख रहे हैं काफी और जो बने हुए हैं उनके लोहे की अ सरिये निकले हुए हैं।

यहाॅं एक फव्वारा दिख रहा है। फव्वारे के आस पास गोल गो डिज़ाइन बनी है ब्लू कलर की और एक लड़का बैठा हुआ है।

यहं एक बड़ा सूटकेस दिख रहा है जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई है।

और ऊ सामने भी कुछ पाउच टंगे है और किताबे हैं और एक सीढ़ी दिख रही है। एक स्टूल रखा हुआ है और काउंटर बना है। उसपे एक आदमी खड़ा हुआ है।

गार्डन है। गार्डन में एक औरत रो रास्ता बना है वहाँ से पाइप से पानी पौधों में पानी दे रही हैं और कुछ पेड़ लगे हैं साइड में और पीछे बिल्डिंगे दिख रही है।